प्रोजेक्ट बनाया है जो बच्चे बहुत शिष्टाचारी दिख रहे हैं जिन्होंने अच्छे से --

जो कि सारी पैक है जो कि नई-नई दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

और यहां पर सैंपल के लिए भी बहुत सारे फोन रखें हुए हैं।

यहां पर एक तस्वीर लगी हुई है बड़ी सी इस पार्लर में जिसमें आंखों के मेक अप का--

यह एक यह एक जगह हैजिसका नाम सामुदायिक पुस्तकालय जामवेदी है।

यहाॅं पूरा खाली पड़ा हुआ है यहाॅं पर बहुत सारे पेड़ है जो कि बहुत घना दिख रहा है।

यहॉं नदी के बीच में जो पुल है यहॉं पर साइकिल खड़ी की फोटो ली गई है।

मारुति और अलग-अलग प्रकार की कारें यहाॅं पर रखी हुई है।